मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़के के बाल जैसे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं उसकी ब्लू कलर की शर्ट दिखाई दे रही है सामने कुछ सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

औरतों ने साड़ी पहन रखी है सामने हरे भरे घास दिखाई दे रही है और छ चिड़िया दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही है औरत ने नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है कैफे पर द सिटी कैफ़े लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कैफे की पट्टी ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है नीचे बहुत सारे लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी में एक आदमी नाँव खेता हुआ दिखाई दे रहा है सामने दो लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं लड़के सामने की तरफ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सामने कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हे दोनों रौ में दिखाई दे रहे हे के सामने कुछ और औरते गणना टीकाकार पूजा करती हुए दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर एक शावर दिखाई दे रहा है जिसमें फवारा जैसे यहां से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बिल्डिंग का गेट दिखाई दे रहा है अंदर लाल कलर की मैट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

उसके ऊपर तिरंगा कलर के बैलून लगे दिखाई दे रहे हैं ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है बल्ब दिखाई दे रहा है।